इस बिल्डिंग के फ्रंट में आई नी महाविद्यालय लिखा हुआ है बिल्डिंग का कलर पिंक कलर --

आगे पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे।

होटल के अंदर जाने के लिए एक सुंदर सा गेट तैयार हुआ है।

फूल का गुलदस्ता खरीदने के लिए आते है।

दुकान में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

हम देख रहे हैं फ्रंट में एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है।

इस फोटो चित्र में एक घर नजर आ रहा है।

इस दुकान का नाम के_आर ज्वैलरी लिखा हुआ है।

वाटर का एक मंडप बना हुआ है इस मंडप को लाइट से सजा हुआ है।

हम देख रहे हैं एक पढ़ाई रूम का फोटो--

ब्लैक कलर रेड कलर का चेयर वहां पर पड़ा हुआ नजर आ--

स्विट्जरलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का एक गाड़ी खड़ा हुआ है।

फोटो में एक एरोडम फिल्ड नजर आ रहा है।

एक बड़ा वाला बंगला नजर आ रहा है।